दुकाने है ढेर सारा है।

बोहोत सारा गाड़ियाँ हैं। एक सड़क है।

दो तीन टेबल है।

एक लकड़ी का डोर हैं वो ऐना हैं सैलून में कुछ सामान हैं बाल बनाने वाला सामान रखा हुआ हैं।

और नीचे बैंक बैंक उंक है।

घड़ी है और ये दीवाल है अम --

एक सड़क है। सड़क के बगल में मकान है।

पीला कलर का बैंक हैं बैंकेम --